पीछे चर्च भी दिखाई दे रहा है चर्च में ईसा मसीह भी दिखाई दे रहे हैं।

छत की ढलाई हो रही है यहाँ बहुत सारे लोग मिल के छत को डाल रहे हैं भी दिखाई दे रही है बहुत सारे सीमेंट भी दिखाई दे रहे हैं।

काफी बड़ा ग्रोसरी शॉप दिखाई दे रहा है। ग्रोसरी शॉप के नीचे एक बहुत ही बड़ा एडवर्टाइज़मेंट का बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत ही खूबसूरत येलो कलर की होम दिखाई दे रही हैं इसमें एक वॉच दिखाई दे रहा हैं एक कबर्ड दिखाई दे रहा हैं जिसमें आ सबके कपड़े झोले में डाल कर रखे हुए हैं एक आदमी हैं आयरन कर रहा हैं।

पीछे भी एक ग्रीन कलर की बस दिखाई दे रही है उसके पीछे एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है आसमान नीला दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत बस स्टॉप दिखाई दे रहा है।

बहुत ही खूबसूरत सा ऑफिस दिखाई दे रहा है। व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी छोटी-बड़ी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं।

यहाँ बहुत सारे ग्रॉसारी शॉप के बाहर बस्ते रखे हुए हैं कार्टून के डिब्बे टिन के डिब्बे यहाँ की ज़मीने ब--

बहुत ही खूबसूरत सी छत दिखाई दे रही है छत के ऊपर के आदमी ग्रिल में बहुत सारे को बाँध रहा है बहुत सारी वासिन भी दिखाई दे रही हैं हरे भरे पेड़ पौधे देखे दे रहे हैं।

आसपास वास-व्हाइट कलर बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही हैं तो ब्लू कलर के ड्रम भी दिखाई दे रहा हैं बहुत सारी लकड़ियां ईंट भी दिखाई दे रहे हैं बालू भी दिखाई दे रही हैं।

एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। इस रेस्टोरेंट में बहुत सारी लाइटें भी दिखाई दे रही हैं।

यहां बहुत बड़ा डेस्क द एक लड़का बैठा हुआ है यहां एक वॉचमैन जो है गे-गेट खोल रहा है बाहर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

जो जो बड़ी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं। एक दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा है। गेट के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट का बोर्ड लगा हुआ है। उसके पास में एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है।